दाहिने साइड में पिंक कलर का बिल्डिंग भी दिख रहा है।

ये छवि में रास्ते का दृश्य दिखाया गया है।

ये चित्र जिम के अंदर का दृश्य दिखाया गया है।

हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

ये चित्र में पेट्रोल पंप के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

सामने कुछ बिल्डिंग्स भी दिख रहे है।

एक बस दिख रही है।

ऊपर में कुछ लाइट्स दिख रहे हैं जो ऑफ है।

बाहर में कुछ गाड़ियां पार्क की गई है।

ये चित्र में बारिश दे रही है।

इस छवि में फूल दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

बाई साइड में एक मूर्ति दिख रहा है।

इस चित्र में रास्ते का सामने का दृश्य दिखाया गया है।

ये दिन की छवि है।

बीच में काले रंग के बाटी में चटनी रखा हुआ है।

इस छवि में पेट्रोल पंप की दृश्य दिखाई गई है।

दाहिने साइड पे एक घर भी दिख रहा है।

नीचे कुछ बैट्स भी रखे हुए हैं।

इस छवि में दुकान के अंदर की दृश्य दिखाई गई है।

पानी साफ नजर आ रहा है।

ये रात की छवि है।

यह छवि में एक झील की चित्र दिखाया गया है।

ये छवि में एक बिल्डिंग के दृश्य दिखाया गया है।

नीचे एक गोडाउन या दुकान दिख रहा है।

बैनर में ऑफिस ऑफ द ट्रेजरी ऑफिसर कामरूप डिस्ट्रिक्ट ट्रेज़री लिखा हुआ है।

बाएं साइड पे एक लाइट दिख रहा है।